उसका कलर काला है और उसके पीछे एक बिल्डिंग बनाई गई हैचारों तरफ से खुली हुई हैकुछ पौधे भी बनाए गए --

बहुत ही बड़ा -ग्राउंड बनाया गया है जिसमे रात छट के मुह से सामने से पूरा लोहे का गेट बना दिया गया है और दो पुतले ऊपर खड़े कर दिए गए --

ई-रिक्शा खड़ा हुआ है एक जिसमे और एक लड़का कुछ कर रहा है वहां उसकी परछाई दिख रही है।

एक ग्राउंड दिख रहा है जिसमे कुछ हलकी हलकी छोटी छोटी घास दिखाई जा रही है लड़के लोग बिच ग्राउंड में खेल रहे है कुछ बैठे है ग्राउंड बोहोत बड़ा लग रहा है।